यह ग्राउंड काफी हरा-भरा लग रहा है और कॉलेज की बिल्डिंग भी बोहोत अच्छे बने हुए हैं और बोहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।